इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई दे रहा है चारो तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है एक सड़क दिखाई दे रही है और कुछ दो पहिये और चार पहिये वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे है और आसमान दिखाई दे--

की पिच बनी हुई दिखाई दे रही है ऊपर विकेट्स दिखाई दे रहा है और आसमान दिखाई दे रहा है और बहुत सारे पेड दिखायि दे रहे है|

बिखरा हुआ बड़ा दिखाई दे रहा है और कुछ हरे हरे पेड़ दिखाई दे र --

इस तस्वीर में एक हरी दीवार दिखाई दे रही है और एक पेड़ की टेहनी दिखाई दे रही --

ये जालीया दिखाई दे रही है और एक बिल्ली दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे एक कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है और कुछ डलिया दिखाई दे रही है सफेद लाइटे दिखाई दे रही है छत पे और रैक्स मे कुछ सब्जियां और फल जमे हुए दिखाई दे रहे है।

केले और पपीता और बहुत सारे तरह तरह के फल टोकरी में रखे हुये दिखाई--

इस इमेजिंग में विच लर्निंग अकॅडेमिक लिखा हुवा दिखायी दे रहा है ओर निचे एक लाल रंग की कार खड़ी हुयी दिखायी दे रही है और नवतारा लिखा हुआ दिखायी दे रहा है।